बिस्किट की इन सभी की रखी हैं और सामने काउंटर बना हुआ हैं काउंटर के ऊपर काफी सारे शिशिया डिब्बे रखे हुए हैं।

खड़े हो कर के चलने के है कुछ में दौड़ने की है कुछमे उठाने की है काफी सारी है और अलमारी में भी सामान रखा हुआ है।

आपण ये घर पत्थर का बना हुआ हैं। इसमें लम्बी लम्बी खिड़किया बनाई गयी हैं और दो दरवाजे लंब लंबे दिये हैं।

यहाँ एक रोड है जो लंबासा पुल बना हुआ है यहाँ पर कुछ गाड़िया खड़ी हुई है और यहाँ पर लाइट के खंबे लगे हुए है जिसमे लाइटे जल रही हेंगी और साइड मे कुछ डाल से बनी हुई हेगी एक तरफ पानी दिया गया हेंगा और यहाँ कुछ ठेले लगे हुए हेंगे।

और यहाँ साईड मे भी कुछ वॉटर जैसे लगा हुआ रहेगा और झूले लगे हुए है यहाँ पर वॉटर वाले यहा खुला आसमान है देखने मे काफी अच्छा लग रहा है।